चिपता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी लाल --

कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहै है यहाँ पर एक फुटबॉल --

का ग्राउंड और एक पिच बना रखी है पिच क्रिकेट के लिए यूज़ की जाती है।

और यह रात का दृश्य है ऊपर लड़ी भी लगा रखी है।

कुछ महिलाएं और कुछ आदमी इकट्ठा होकर--

यह फिल्हाल अभी एक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है यह नाव चालक हैं।

मिक्सिंग वाली मशीने लग रही है यहाँ पर रोड भी बज रही हैं।

यहाँ पर एक झूला और कुछ पेड़ और फूल नज़र आरहे है और यह एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है।